ब्लैक कलर की जिस पे लिखा हुआ है यू_पी सिक्स फाइव पी_वी सेवन थ्री फोर नाइन इसका नंबर है यू_पी यू_पी का ले रखा है।